आकास एकदम रेनबो जैसा दिख रहा है ये सीन मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है।

अ-- साम का टाइम है और बादल बहोत रेनबो जैसे दिखाई दे रहे हैं।

ये क्रिस्चन के लिए एक बहुत बड़ा ही फेस्टिवल्स है हम सबको भी च चर्च में जा के वहाँ कैंडल जला के पूजा करनी चाहिए।

चे की फोटो है जहाँ पे हरे हरे फल दिखाई दे रहे हैं | इसमें जो फल है उसका नाम अमरुद है।